चित्र में मुझे कैलेंडर दिखाई दे रहा है।

चित्र में मुझे गेट दिखाई दे रहा है जिसमें नो एंट्री बोर्ड --

चित्र में मुझे कई सारे लोग खड़े हुए दिख रहे हैं।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

चित्र में मुझे एक सॉप दिख रही है।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

चित्र में दो आदमी बैठे दिख रहें हैं।

संस्था दिखाई दे रहा हैं।

मुझे एक चित्र दिखाई दे रहा हैं।

चित्र में मुझे ऊपर लगा हुआ फैन दिखाई दे रहा है।